पर्दा दिखाई पड़ रहे हैं।

गोदरेज में शीशा भी लगाए गए हैं।

कुरकुरे दिखाई पर रहे हैं।

दुकान के बाहर तौलिया भी दिखाई पड़ रहा है ।

व्हाइट कलर --

रंग बिरंग कलर के लेट भी लगे हुए है।

गेट दिखाई पड़ रही है एक टो खिड़की दिखाई पड़ रही हैं।

बाहर में चेयर रखा गया है बैठने वाला।

चेयर रखे गए हैं दो ठो।

और बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ दिखाई पर रहे--

और इसमें खिड़की भी दिखाई पड़ रहे हैं और गेट भी दिखाई पड़ रहे हैं।

अगल बगल में छोटे से पेड़ पौधे रहे।

जो व्यक्ति फोटो खींच रहे हैं और टी शर्ट पहने हुए हैं।

जो कारिया पहने हुए हैं हाथ में।

और बैग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और ब्लैक कलर --

रखने वाला बनाया गया है।

और किशमिश का पैकीट भी रखा गया है।

हाथ में कड़ियां भी पहने हुए हैं।

और यह बरगद का पेड़ है।